बाइक रखी हुई है ब्लैक कलर की और कुछ बैनर से लगे हुए पोस्टर लगे हुए है और दुकान है नीचे टेबल कुर्सी रखी हुई है।

स्टेज है बोहोत सुंदर स्टेज है जिसमें फू फ्लॉवर लगे हुए है और व्हाइट और पिंक कलर की स्टेज लगी हुई है और सामने --

सामने एक स्टेज लगी हुई है और चेयर डली हुई है लाइन से उनपे बहोत सारे बचे बेठे हुए है एक लड़की है जो खड़ी हुई है ओरेंज कलर की ड्रेस में।